जमोल में स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डेटाबेस के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे पबचेम डेटाबेस से रासायनिक स्ट्रक्चर्स लोड करना और जीचेम्पेंट में बनाये गए 2डी स्ट्रक्चर्स को जमोल में 3डी मॉडल्स में बदलना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जमोल एप्लीकेशन के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी उपलब्ध वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 जावा वर्जन 7 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउज़र 220 मैंने एक नयी जमोल एप्लीकेशन विंडो खोली है
जमोल डेटाबेस सूचीबद्ध कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को लोड करने की विशेषता रखता है
मेन्यू बार पर फाइल मेन्यू एक विकल्प गेट मोल रखता है
यह रासायनिक स्ट्रक्चर डेटाबेस पबचेम से अणुओं को लोड करता है
यह प्रोटीन दाता बैंक से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को लोड करने के लिए एक अन्य विकल्प गेट पीडीबी रखता है
इस विशेषता को विस्तृत रूप से अन्य ट्यूटोरियल में समझाया जायेगा
पैनल पर रासायनिक स्ट्रक्चर लोड करने के लिए गेट मोल पर क्लिक करें
स्क्रीन पर एक इनपुट डायलॉग बॉक्स खुलता है
डेटाबेस में सूचीबद्ध कोई भी अणु टेक्स्ट बॉक्स में निम्न टाइप करके लोड किया जा सकता है कॉमन नेम या आईयूपीएसी नेम सीएस नंबर सिड नंबर इंची आइडेंटिफायर या स्माइल्स आइडेंटिफायर एक निश्चित रसायन के आइडेंटिफिकेशन नंबर की जानकारी के लिए पबचेम डेटाबेस वेबसाइट पर जाएँ
अब स्क्रीन पर फेनोल दिखाते हैं अब इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में फेनोल टाइप करें
ओक बटन पर क्लिक करें
पैनल पर फेनोल का मॉडल दिखता है
हम भिन्न प्रस्तुतीकरण विकल्पों को प्रयोग करके फेनोल के प्रदर्शन को रूपांतरित कर सकते हैं
ये विकल्प मेन्यू बार और पॉप अप मेन्यू में सूचीबद्ध किये गए हैं
हम फेनोल की बेंज़ीन रिंग में प्रतिस्थापी जोड़ सकते हैं
सबसे पहले मॉडल मे परमाणुओं को लेबल करते हैं
डिस्प्ले मेन्यू पर क्लिक करें और लाबेल सलेक्ट करें
नंबर विकल्प पर क्लिक करें
अब कार्बन परमाणु नंबर 2 से जुड़े हाइड्रोजन नंबर 10 को अमीनो ग्रुप से बदलें
मॉडेलकिट मेन्यू खोलें विकल्पों से नाइट्रोजन सलेक्ट करें
हाइड्रोजन नंबर 10 पर क्लिक करें
पैनल पर यह para अमीनो फेनोल का अणु है
हम डिस्प्ले को स्टिक्स डिस्प्ले से बदलेंगे
मॉडेलकिट मेन्यू से एग्ज़िट करें
पॉप अप मेन्यू खोलें नीचे स्टाइल पर जाएँ शीम सलेक्ट करें और स्टिक्स विकल्प पर क्लिक करें
पैनल पर हमारे पास स्टिक डिस्प्ले में para amino फेनोल का मॉडल है
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिनको बनाना मुश्किल है पैनल पर आसानी से लोड किये जा सकते हैं
उदाहरण के लिए कोलेस्टेरोल फाइल मेन्यू पर क्लिक करें
गेट मोल विकल्प पर क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें कोलेस्टेरोल ओक बटन पर क्लिक करें
पैनल पर कोलेस्टेरोल का एक अणु दिखता है
हम अणु में विशेषताओं जैसे डबल बॉन्ड और साइड चेन को हाईलाइट कर सकते हैं
डबल बॉन्ड को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणुओं के रंग को बदलें
टूल बार में सिलेक्ट एटम्स आइकन पर क्लिक करें
फिर डबल बॉन्ड में शामिल हुए कार्बन परमाणुओं पर क्लिक करें
परमाणुओं के चारो ओर एक पीला हेलो दिखता है
पॉप अप मेन्यू खोलें
नीचे कलर पर जाएँ एटम्स सलेक्ट करें और ओरेंज विकल्प पर क्लिक करें
अब टूल बार में रोटेट मॉलिक्यूल विकल्प पर क्लिक करें
कोलेस्टेरोल मॉडल में डबल बॉन्ड अब नारंगी रंग में है
उसी प्रकार हम साइड चेन में कार्बन्स को हाईलाइट कर सकते हैं
पॉप अप मेन्यू प्रयोग करके रंग को बैंगनी में बदलें
पैनल पर हमारे पास हाईलाइट की हुई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कोलेस्टेरोल का मॉडल है
एक नियत कार्य में डेटाबेस से कैफीन का स्ट्रक्चर लोड करें
अणु में महत्वपूर्ण विशेषताओं को हाईलाइट करें
डिस्प्ले को वायरफ्रेम में रूपांतरित करें
अब मैं जमोल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता बताऊँगी
हम अणुओं के 2डी स्ट्रक्चर्स को एक अन्य सॉफ्टवेयर में 3डी मॉडल्स में बदल सकते हैं
यहाँ पैनल पर मेरे पास एमिनोएसिड अलानाइन का स्ट्रक्चर है
इस अणु का 2डी स्ट्रक्चर जीचेम्पेंट नामक सॉफ्टवेयर में बनाया गया था
स्ट्रक्चर को mol फाइल की तरह सेव किया गया था
जीचेम्पेंट 2डी रासायनिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है
जीचेम्पेंट पर ट्यूटोरियल्स निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं
स्ट्रक्चर्स को बनाने और mol फॉर्मेट में सेव करने के लिए एनालिसिस ओएफ कम्पाउंड्स ट्यूटोरियल देखें
इस जीचेम्पेंट डिस्प्ले एरिया पर दर्शाये 2डी रेखाचित्र निम्न के हैं अमीनो एसिड Alanine न्यूक्लियोसाइड Adenosine सैकराइड Alpha D ग्लूकोपाइरानोज मैंने इन्हें mol फॉर्मेट में अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है
सबसे पहले अलानाइन के 2डी स्ट्रक्चर्स को जमोल एप्लीकेशन में 3डी मॉडल में देखते हैं
अतः मैं एक नयी जमोल विंडो खोलूंगी
टूल बार में ओपन आ फाइल आइकन पर क्लिक करें
मैं डेस्कटॉप फोल्डर चुनूँगी और ओपन पर क्लिक करुँगीAlaninemol फाइल चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर अलानाइन का मॉडल खुलता है
मॉडेलकिट मेन्यू खोलें और फिक्स हाइड्रोजेंस एंड मिनिमाइज विकल्प पर क्लिक करें
स्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन्स जोड़े गए हैं और एनर्जी मिनिमाइज़ हुई है
mol फाइल की तरह हम मेन्यू बार और पॉप अप मेन्यू को भी प्रयोग करके डिस्प्ले बदल सकते हैं
यहाँ जमोल में adenosineमोल का 3डी मॉडल है
और यह जमोल में alpha d glucopyranoseमोल का 3डी मॉडल है
इसको सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा पबचेम डेटाबेस से रासायनिक स्ट्रक्चर्स लोड करना
फेनोल और कोलेस्टेरोल के डिस्प्ले में रूपांतरण करना
जीचेम्पेंट में बने 2डी स्ट्रक्चर्स को जमोल में 3डी मॉडल्स में बदलना
अलानाइन एडेनोसिन और alpha d ग्लूकोपाइरानोज के 2डी स्ट्रक्चर्स को 3डी मॉडल्स में बदलना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
जीचेम्पेंट में निम्न अमीनो एसिड्स के 2डी स्ट्रक्चर्स बनायें
सिस्टीन हिस्टीडाइन और फेनीलालेनाइन mol फाइल्स में सेव करें जमोल में फाइल्स खोलें और डिस्प्ले को रूपांतरित करें
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
यह भारत सरकार के एम एच आर दी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद